पीछे बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं खंभे के ऊपर लाइटें जल रही हैं।

एक सड़क है सड़क के पास पे एक सरकारी लगा हुआ है।

पीछे एक आदमी काली पेंट सफेद टी-शर्ट पहने हुए खड़ा है।

बहुत सारी केतली हैं केतली का रंग सफेद और लाल है।

एक पूल है पूल पे एक लोहे की रेलिंग लगी हुई है नीचे बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं।

कुर्सियों पे आदमी बैठे हुए हैं कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

एक कमरा है कमरे में बेड लगी हुई है बेड पे एक गुड़िया रखी हुई है।

इसके हाथ में एक बोतल है पीछे हरा पेड़ लगा हुआ है।

सीढ़ी बनी हुई है सीढ़ी पे बजरंग बली की मूर्ति रखी हुई है पास में तीन छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई है।

एक पर्दा लगा हुआ है ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

पीछे बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए है।

यहां पे कुछ औरतें कुछ बच्चे खड़े हुए हैं एक बच्चे पीले रंग की टीशर्ट पहन रखे हैं।

छत पे लाइटें टंगी हुई हैं पीछे एक दीवाल है। दीवाल का रंग लाल है।

एक बच्चे ने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

पीछे दीवाल है दीवाल में लाइटे जल रही हैं।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

पीछे दीवाल पे लट्टू से कुछ रखे हुए हैं।

उसपे एक छोटी लड़की बैठी हुई है पार्क में हरी हरी छोटी घास हैं।

एक आदमी चश्मा लगाए हुए खड़ा है पास में एक औरत खड़ी है।

यह लोहे की रेल की पटरी है पटरी के ट्रैक पे दो आदमी खड़े हुए हैं।

पीछे पेड़ लगा हुआ है लोहे के खंभे लगे हुए हैं।

एक घर सा है घर के ऊपर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

मैदान है मैदान में छोटी छोटी हरि घास लगी हुई है वहां पे आदमी खड़े हुए है।

छोटी छोटी गमले हैं गमले में पेड़ लगे हुए हैं।

कुर्सी के पास पे स्टील के भगौने रखें हुये हैं।

एक ये पोस्टर लगा हुआ है जिस पे जियो फोर्टी-नाइन लिखा हुआ है।